तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह एक फलों की दुकान है।

और जिस पे पोस्टर चिपका हुआ है गेट नम्बर चार--

इसमें विभिन्न प्रकार की लाइटें जल रही हैं।

इसमें बैठने के लिए मेज पड़ी हैं।

इसका नाम प्रीपेयर आई_ए_एस है।

और मंदिर के अंदर एक नीला हुआ ड्रम रखा हुआ है एक--

दोस्तों कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह एक बहोत ही बड़ा मैरिज हॉल है।

इधर कुछ यात्री भी बैठे हुए हैं।

जिस के बाहर एक पेड़ हरा लगा हुआ है।

जैसा कि आप सब जानते हैं यह एक सफेद कलर की बस है।

और कुछ बाहर खड़े हुए हैं इस बस के आगे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है।

उसे आगे जिस पे पीले कलर के तीन बैलून लगे हुए हैं।

और यहां पे मेन गेट पे बढ़िया लाल और हले कल हरे कलर की बढ़िया लाइटिंग जल रही है।

और एक रास्ते के लिए बोर्ड भी बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है और कुछ व्यक्ति भी बाहर खड़े--

यू_पी की राजधानी लखनऊ का ये जागर्स पार्क है।

जिसके अंदर बहुत सी सब्जियां रखी हुई है जैसे आलू।

और दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहां कोई बिल्डिंग या कंपनी बन रही जिस--

ये दो आदमी खड़े हुए काम कर रहे हैं जोकि--

जिसमें की बहुत सारी लोहे की सलियां भी लगी हुई--

दोस्तो जैसा कि आप सब जानते है कि यह एक फूलों की दुकान ल लग रहीं है जीस--

पीले लाल गुलाब नीले कलर के फूल लगे हुए हैं।

दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह एक बहुत ही बड़ी पुस्तकों की दुकान दिख रही है।

के ऊपर की तरफ एक स्टार मून टाइप का लोगो ल लटका हुआ है और--

अन्दर काफी सारी टेबल और कुर्सियां पड़ी हुई हैं।

इसके बाहर की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर--

खंभा है इस पे लाइट लगी हुई है और इस--

कोल्ड ड्रिंक मिलती है और साइड में कुछ चिप्स का पैकेट टंगे हुए हैं।